यहाँ पे हमें इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आदमी झाड़ू लगा रहें है और बहुत बढ़िया से झाड़ू लगा रहें हैं निचे। ये साफ सफाई कर रहें हैं यहाँ की और साफ-सफाई करना हमारे लिए बहुत अच्छा --

ए.टी.एम. है और बैंक भी है और बंधन बैंक के बगल में एक आधार कार्ड सेंटर है। यहाँ पे आधार कार्ड का कॉमन सर्विस भी है और बैंक में भी हमारे लिए बहुत अवसर हैं। आधार कार्ड का कॉमन सेंटर भी हमारे लिए बहुत जरूरत है।

और ये बहुत अच्छा लगता है गाना सुनना और गाना भी और कुछ लोग बैठ के इसे एंजॉय भी कर रहें हैं। यह तस्वीर बहुत अच्छा लगा।

यहाँ पे हम देख सकते हे इस तस्वीर में यहाँ पे से कार पार्किंग की जगह है ।

यह लगता है कि कपड़े का दूकान है और कपड़ा का दूकान बहुत सारे कपड़े यहाँ पे हैं जैसे में स्वेटर हुआ शॉल ई हुआ।

यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इस तस्वीर में दिखाया गया ये एक मेडिकल हॉल है और उस मेडिकल हॉल का नाम श्री शिव दुर्गा मेडिकल --